इस चित्र में बहुत सारे हिरण दिख रहे हैं।

गमला है जो रेड कलर का है जिसमें एक पौधा लगा हुआ है जो हरा भरा है।

दो जेंट्स एक लेडिस दिख रही है जिसके बगल में दो बाइक खड़े हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रहा है जो की एक सरकारी बिल्डिंग जैसा लग रहा है।

इस चित्र में एक लेडिस और एक जेंट्स दिख रहे हैं।

के हाथ में माइक है उसके बगल में एक स्टैंड लगा हुआ है।

पानी का बोतल लगा हुआ जहां तिरंगा झंडा लगा हुआ है।

कुछ गाड़ी दिख रहे है कुछ हरे भरे पौधे दिख रहे है।

एक मशीन दिख रहा है कुछ पट्टा दिख रहा है कुछ छड़ दिख रहे हैं कुछ बगल में घर हैं।

एक गाड़ी है एक साइकिल है।

दो बच्चे देख रहे हैं खड़ा होकर के उसके आगे मैं कुछ लोग ढोल बजा रहे हैं।

के बगल में बहोत सारे बाइक लगे हुए हैं जो एक हेलमेट टंगा हुआ है बहोत सारे लाइट दिख रहे हैं।

बहोत सारे कपड़े दिख रहे हैं।

सामने बहुत सारा भीड़ है जो की पूजा कर रहे हैं।

चिड़ियां का चित्र बना हुआ हैं सामने कुछ लोग बुक्स पढ रहे है।